जैसे कि देख पा रहे हैं सामने का आदमी नजर आ रहा है जो कि ब्लू रंग के टी शर्ट में है और उसके हाथ में फोन है और वह फोन की तरफ ही देख रहा हैं --

एक आदमी नजर आ रहा है और कई सारे यहां घर बने हुए भी नजर आ रहे हैं ।

जैसा की देख पा रही हूँ यह एक घर नजर रहा है और यह बाहर बालकनी नजारा दिख रहा है बाहर ऊपर बालकनी से देखने पे ऐसा लग रहा है ये --